सब फूल रखे हुए हैं।

कपड़े का दुकान है और एक पुतला में कपड़ा रखा--

हैं और ऊपर लाइट्स लगे हुए--

साइकल के बगल में रूम है।

बच्चे लोग स्नान कर रहे हैं पुरुष हैं।